काफी बड़े भी एक और नीचे एक बाइक एक स्कूटी है।

ग्रीन कलर के गेट के बगल में येलो कलर का शटर भी है।

पुलिस अपने वर्दी में है।

कुछ बच्चे उधर उधर जा भी रहे है।

चार आदमी नजर आ रहे हैं काफी सारे बाइक भी है।

कुछ आदमी अंदर जा रहे हैं कुछ बाहर में खड़े हैं बाइक के हैंडल में हाथ रखे हुए।

नीचे एक हाल भी दिखा दे रहे कहीं जाने का--

दो आदमी खड़े हैं दो आदमी बैठे हैं।

बच्चा भी नजर आ रहा है। पीछे मिरर भी है।

नीचे ईंटा बिछा हुआ है जो दो कलर का--

तीनों अलग-अलग एज के लग रहे हैं। और तीनों अलग अलग चटाई पे बैठे हुए हैं। योग कर रहे हैं। सा--

कार को हवा में उठाएं हुए है।

भी नजर आ रहे हैं आगे एक बहुत बड़ा बोर्ड भी है।

पे हमें दो अलग अलग दुकान नजर आ रहे हैं जोकि एक दुकान के अंदर रेड कलर की टी शर्ट में एक आदमी दिखाई दे रहे --

दो साइकिल भी खड़ा है बगल में दो बाइक भी है।

नीचे का कलर रेड लग रहा है पूरी तरह से सामने काफी सारे लोग खड़े हैं।

सामने एक लड़का जिसके साथ फोटो घिचा रहे हैं जिसमें एक बड़े से नदी है।

ये एक कैफ़े हैं जिसमें एक फैमिली नजर आ रही है।

आ बोर्ड में कुछ लिखा हुआ है।

बगल ऊपर में एक ए_सी भी है ऊपर में।

यहां पे एक रोड है काफी सारे अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं जिस में कुछ लोग चलते हुए नजर आ रहे हैं।

और एक बाइक भी है और ये दूध या अन्य प्रकार की चीजें बेचें जाते है सामने बगल में पेड़ है।

मेन के ऊपर में पंखा भी लगा हुआ है।

इसे काफी छोटे छोटे पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

खंभे हैं खंभे के कलर येलो एंड वाइट है। ऊपर के --

चार खम्बे में पेड़ भी रखा हुआ है।

के आगे स्कूल है स्कूल के पोस्टर में स्वामी विवेकानंद जी का पिक्चर भी है।

दीवार का कलर व्हाइट है।

यहां पे दो एक ही प्रकार के लैब लग रहे हैंजिसमें मछली रखा जाता है छोटे छोटे--

मैं एक क्लास लूम लग रहा है जिसमे आगे एक व्हाइट बोर्ड है।

गेट के पास से काफी सारे रोशनी आ रहे हैं।

बगल में तीन खिड़की हैं।

वाइट कलर के लाइट के पास ए_सी है।

और साइड में भी एक छोटा सा बिल्डिंग जिसमें दो खिड़की नजर आ रहे--

सामने हमें काफी सारे बच्चे बच्चियां बूढ़ा बूढ़ी नजर आ रहे हैं जो पूजा करने के लिए बैठे हैं कुछ खड़े हैं ।

दो आदमी कॉफी पी रहे दो आपस में बात कर रहे हैं।